बस के सामने एक छोट-- एक आदमी दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे रोड पे कुछ कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की साइड एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जो एक विंडो के यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही है विंडो के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देरहा है यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे बहुत सारे स्कूटीस खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पइ कई सारे तार भी दिखाई दे रहे हैं।